यहाँ पर स्टेज सजा हुआ है फूलो लाइट आर्टिफिशियल फ्लावर्स की मदद से यहाँ पर पीछे रेड कलर के कर्टेन्स भी लगे हुए दिख रहे है।

यहां गैरिज में एक कार का बोनेट खुला हुआ रिपेयरिंग कर रहा है नीचे टायर और कुछ स्क्रू वगैरह भी दिखाई दे रहे हैं।

यहां हमारे सामने स्क्रीन पर एक इमेज दिखाई दे रही है ये इमेज एक जू की है।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

इस शीप के ऊपर काफी सारे तार के खंबे दिखाई दे रहें हैं कुछ लोग भी दिखाई दे रहें हैं और बादल से उगता हुआ सूरज --